बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अ लेबर आये हुए हैं सारे बच्चे सब खेलने के लिए और यहाँ का डिजाइनिंग है पत्थल | शायद यहाँ पत्थल का टुकड़े हैं और यहाँ पर अच्छी तरीके से सारे लोग काज करते हैं।

यह देखिए बहुत ही पुराना घर देखने को मिल रहा है। जो की अ पेंटिंग पुराना ही पेंटिंग किया हुआ है जो बहुत ही अच्छा है।

यहाँ पर ये लोग अपने भोजन सामग्री तैयार करने वाले हैं और यहाँ पर एक भाईसाब है जो की साफ कर रहा है और दूसरा वहाँ पर --

और खाना खा रहे हैं सारे लोग और सारे उपस्तिथ अ लोग पूरे एन्जॉय से खाना खा रहे हैं । ये हॉल की सजावट बहोत जबरदस्त है और लाइटींग की जबरदस्त लाइटींग किए हुए हैं और --

यहाँ पर आप देख सकते हैं किताब बुक डिपो के नाम से शायद किताब दुकान है और सर की चेहरे पर मुस्कान है और सर यहाँ शर्ट पहने हुए हैं शर्ट भी लाजवाब दिखने को मिल रहा है।

और यह दीपक अ काफ़ी संख्याये में जल रही हैं । सबसे बड़ी बात ये है और ये नाइट अ शो किया जा रहा है यहाँ पर शायद कोई प्रोग्राम है जोकि काफ़ी अच्छी तरीके से किए जा रहे --

ये देखिए आप नजारा क्या जबरदस्त नजारा देखने को मिल रहा है और ये मार्केट है मार्केट में काफी भीड़ लगे हुए हैं।

बहुत बड़ा मीटिंग हॉल है| यहाँ पर स्पीकर स्पीच देने के लिए आ चुके हैं और बच्चे सब से भी स्पीच करवाते हैं| सामने सभी प्रकार का बैलून के द्वारा सजाया गया है स्टेज |

पहले मैं सबको प्रणाम करना चाहूँगा | जो सर के गले में माला अ आ अर्पण किया गया है और सर यहाँ पे उपस्थित है और सारे सर के लिए यहाँ शायद बर्थडे वगेरा होंगे।

और सामने एक गर्लस भी दिख रहा है जो हाथ में फोन ले कर के खड़े हैं और ये काफ़ी अच्छी ट्रेंडिंग अ पिक है जो कि देखने में सुंदर लग रहा है सजावट भी यहाँ का काफी --

आपको बताना चाह रहा हूँ ये लग रहा है गंगा तट का एक बड़ा- सा पूल है और छठ का पूजा यहाँ पर सारे लोग कर रहै है।

जो यहाँ पर काफी अ अच्छी तरह से यहाँ पार्किंग अ बनाया गया है| जो फूल देखने को मिल रहा है पेड़ भी हरा-भरा दिख रहा है और गाड़ी रेड कलर का है।

और देख सकते हैं सारे बच्चे लोग उपस्थित हैं और सर लोग आगे में उपस्थित हैं और सामने पीछे टेंट भी लगे हुए हैं और सामने हरा-भरा झाड़ियां भी हैं ।